लकडीयों को बांधकर एक बांढ़ बनाया गया है।

यहां पर एक व्यक्ति मकान की नींव के ऊपर खड़ा हुआ है।

यहां पर कुछ आधी टूटी हुई ईंटें पड़ी हैं।

दुकान पर कुछ चित्र लगे हुए हैं जिन पर पिज्जा बर्गर आदि सामान छपे हुए हैं।

दिया गया चित्र बैंक साखा के किसी ए_टी_एम को दिखाता है।

दो व्यक्ति अंदर जाते हुए दिख रहे हैं।

यहां पर एक कांच का किवाड़ है जिसके पीछे एक व्यक्ति खड़ा है।

बाईं ओर दो पेट्रोल पंप की मशीनें हैं।

यह एक बंद संस्था का चित्र है।

विद्या इंस्टिट्यूड ऑफ़ इन्फॉर्मैशन ।

एक कंटेनर सफेद रंग का है जिसकी तली--

इसके बराबर में कुछ जानवर लोटे हुए हैं।

यहां पर कुछ कपड़े भी सुखाई दिए जा रहे हैं।

और डोर के पास एक व्यक्ति कंपाउंडर के तौर पर बैठा हुआ है।

तथा दीवार पर कुछ उपले सुख रहे हैं।

दुकान के अंदर एक कुर्सी रखी हुई है।

तथा बाइं और कुछ साइकिलें खड़ी हैं।

यह बन रहे घर के किसी छत का दृश्य है।

यहां पर कुछ सफेद पाइप लगे हैं जो कि घर में तारों को पहुंचाने का काम करेंगे।

यहां पर कुछ महिलाएं इनकी पूजा या फिर इनके चरण स्पर्श कर रही हैं।

ये मछलियां मरी हुई है।

था एक प्लास्टिक का स्टूल भी रखा हुआ है।

यहां पर कोई उत्सव मनाया गया होगा।

यह एक गोलगप्पे की दुकान है।

मशीन को चलता हुआ एक तार भी दिखाया जा रहा है।

केन्द्र में पादरी खड़े हुए हैं तथा उनके बराबर में कुछ व्यक्ति सफेद वस्त्र पहने हुए खड़े हैं।

सभी व्यक्ति के हाथ में एक किताब है।

यहां पर एक सफ़ेद घर है।

पास में ही एक जानवर है और दो पेड़ दिखाई दे रहे है।

माइक्रोमैक्स आदि रखी हुई हैं।

यह दृश्य किसी सड़क का है जहां से एक गाड़ी जा रही है।

यहां पर एक कुटिया है।

एक व्यक्ति बैग टांगे खड़ा है।

उसी के पास में एक पीले लाल रंग का चित्र और है यह पूरा घर सफेद रंग से बना हुआ है।

यह दृश्य बहुत अधिक सुंदर है।

ऊपर से एक झरना पानी सहित आ रहा है।

यहां पर बहोत सारे व्यक्ति इस झरने में नहा रहे हैं।

छाते के नीचे खड़े हुए हैं।

यह दृश्य एक सड़क का है।